कुछ लोग नज़र आ रहे हैं सफेद लाल सब रंग की माला यहाँ नज़र आ रही हैं और वो बहुत प्यारी लग रहीं है।

यह एक रोड की तस्वीर है जहा चर्च बनी हुई है कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं यह ईंटों से बनी है उपर क्रिस्टिअन्स का साइन बना हुआ है।

यहां एक रोड की तस्वीर है जहां एक कंस्ट्रक्शन साई या गोडाउन की तस्वीर लग रहा है।

यह एक रोड की तस्वीर है एक हाइवे की तस्वीर लग रही है यहाँ कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं एक आदमी साइकिल पे नज़र आ रहे हैं पेड़ नज़र आ रहे हैं सूरज नज़र आ रहा है।

यह एक रोड की तस्वीर है रोड पे चर्च बनी है चर्च बहुत ही प्यारी डेकोरेट की गई है लाइट-लाइट्स से कुछ पोस्टर लगी है दिवारों पेकुछ पेड़ है. पीछे--

यह किसी लाइब्रेरी या बुक स्टोर की तसवीर लग रही हैं यहां कुछ लोग है जो लोग बैठ क पढ़ रहे हैं।

यह किसी कैफ़े या घर की तस्वीर लग रही है यहाँ कुछ डेकोरेशन किया गया है पीछे कैमरास नजर आ रहे हैं।